ब्लैक कलर की सीढ़ी है एंड बहुत सारा कचरा फैला हुआ है एंड नीचे कुछ तार पड़ा हुआ है टाइल्स पड़ी हुई है।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

रेलिंग लगी हुई है बहोत सारे लोग बैठे हैं ऐड--

और बहोत सारे पेड़-पौधे हैं कार है बहोत सारे लोग हैं जो ऊपर किले की साइड जा रहे हैं सीडीओ से --

इस फोटो मे मुझे एक बहोत बड़ा किला दिखाई दे रहा है जिसका कलर लाइट येलो है एंड ब्राउन कलर की विंडोस है।

बहुत सारी कार है सड़क है बहुत सारे लोग हैं आ रहे जा रहे हैं।

और ब्राउन कलर के गेट ऊपर टीन है बहुत सारे लोग खड़े हैं रेलिंग लगी हुई रेड कलर का बोर्ड है।

टी शर्ट पहनी है ब्लैक पजामा पहना है नीचे शूज पहने है पीछे बहोत सारी लाइट्स है ए_सी है ब्लैक कलर का हॉल है।

रेल पटरियां हैं बहोत सारे लोग है स्टेशन का कलर ब्ल ब्लू है और बहोत सारे वायर है जिससे ट्रेन चलती है और --

इस फोटो मे मुझे एक जिम शॉप दिखाई दे रही है जहां पे जिम की मशीनें रखी हुई है एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा है।

इस फोटो में मुझे बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जहां पे--

फिश शॉप दिखाई दे रही हैं जहां पे बहोत सारी फिशेस हैं।

इस फोटो में मुझे एक बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे जो की ड्राइंग बना रहे जिनका कलर अ --